यहां पर मुझे एक चर्च दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे एक ढाबा दिखाई दे रहा है।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

यहां पर मुझे एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे एक चबूतरा दिखाई दे रहा है।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

यह यहां पर मुझे एक कॉफी शॉप दिखाई दे रहा है।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

यहां पर मुझे एक चूल्हा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर मुझे बहोत सारी चेयर दिखाई दे रहीं हैं।

यहां पर मुझे तीन टेबल दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे हॉस्पिटल के अंदर का रिसेप्शन दिखाई दे रहा है।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

यहां पर एक बहोत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे गाड़ी का बोनेट खुला हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर मुझे बहोत सारी लाइट दिखाई दे रही है।